एक होटल नाम का बैनर लगा हुआ है।

यहां पेड़ के पत्तियां गिरी हुईं हैं।

यहां एक मस्जिद नजर आ रही है।

आलेशान घर नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ आदमी काम कर रहे है।

यहाँ गुरुद्वारा सफेद रंग का पुता हुआ है और कुछ पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ कुछ लोग कपड़े लेने भी आए हुए हैं।

जीरो नौ लिखा हुआ है यहां पेट्रोल पंप में खड़ी है।

उसके ऊपर आकांश लिखा हुआ है यह बिल्डिंग --

ग्रे कलर और सफेद कलर की पुती हुई है यहाँ बहुत से पेड़ दिख रहे हैं।

यहाँ एक एनिमल टैटू स्टूडियो है।

बहुत से पौधे भी नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर लाल कलर के फूल लगे हैं।

एक आदमी है दो लड़की है।

नीचे चटाई में लाल कलर है।

यहाँ एक गुरुद्वारा है।

यहां फूल की तोरन लगी है।

यहां गुरुद्वारा अच्छे से सजा हुआ नजर आ रहा है।

और नीला नजर आ रहा है।

मौसम बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ कुछ बाइक नजर आ रही है।

क्लास रूम नजर आ रहा है।

कप लेके भी खड़ा हुआ है और पीछे घर भी दिख रहा है और--

और कुछ दुकानें भी है।

शादी के लिए सजाया जा रहा है।

ट्रैक्टर और पीछे का फ्रेम पीला है।

जो कि सफेद कलर से पुता हुआ है ।

यहाँ पर छट पूजा की जा रही है ।

और यहाँ कोई सा प्रोग्राम चल रहा है।

सफेद और नीले रंग के गुब्बारे नजर आ रहे हैं।

और दीवार पे अलग-अलग किस्म के लाइट भी लगे हुए हैं।

और पेड़ भी नजर आ रहे हैं।